उसके दाएं साइड पेड़ बनी हुई है और उसके बाएं साइड पटरियां हैं और एक ट्रेन है जिसका का रंग पीला अ नीला और आ गुलाबी है।

और ठीक उसके दाई और बहुत हरे भरे से वृक्ष है जो की बहुत बड़े और दिखने मे बहुत सुंदर दिख रही है।

चित्र मे एक रोड है रोड के बाईं और बहुत बड़े से मकान है मकान के नीचे कई आदमी खड़े है साथ ही एक आदमी स्कूटर पर जा रहे है साथ ही एक ठेला हैं।

सजा हुआ है और फूलों से भी जो कि दिखने मे बहुत सुन्दर दिख रहा है साथ ही गेट के बाहर दो बाईके खड़ी है जो कि काले रंग की है साथ ही टाइल्स भी लगे हुए है जोकि लाल और सफ़ेद रंग की है।

साथ ही एक पनीर का टुकड़ा और दो कटलेट है और एक नींबू का टुकड़ा है कुछ प्याज के टुकड़े है कुछ गाजर के टुकड़े है और कुछ कैप्सिकम के टुकड़े भी है ।

चित्र मे एक टेबल है टेबल के ऊपर एक चटाई बिछी हुई है चटाई के ऊपर दो चम्मचे रखी हुई है साथ ही एक लम्बी सी प्लेट रखी हुई है जिसके ऊपर पांच छः टुकड़े खाने के है जैसे दही और--

इस चित्र में एक मस्जिद बनी हुई है मस्जिद के बगल मे खंबा बना हुआ है जो सफेद रंग का है उसके सामने एक पेड़ बनी हुई है पेड़ के ठीक सामने एक पोल बनी हुई है जिस पे बहोत सारे तारे गई है उसके ठीक बगल मे छोटा सा घर है।

और फिर एक पेड़ है मस्जिद के सामने एक तलाब बनी हुई है जिसमें बहुत सारे कचरे फेके हुए है।

चित्र में एक मकान बनी हुई है जिसका रंग नीला है मकान के दोनों तरफ दुकान है जिसमें से एक दुकान बंद और एक दुकान खुली हुई है।

सामने एक सफेद रंग का मकान बना हुआ है उसके ठीक सामने कई अलग-अलग अकाड़ के मंदाने बनी हुई है जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत दिख रही है।

इस चित्र मे सड़क बनी हुई हैसड़क के बीच मे गोल करके पेड़ लगे हुए है साथ ही एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं।

कमरा बना हुआ है जिसका रंग सफेद है साथ ही नीचे टाइल्स लगी हुई है जो की भूरे रंग की है और उसके साथ ही दो चेयर लगी हुई है वो भी भूरे रंग की है उसके ठीक सामने एक शीशे लगी हुई है जिसने बहुत तरह-तरह की छोटे-छोटे बोल्फ लगे हुई हैं।